बहोत सारे वृक्ष दिख रहे है बगल में भी नारियल का पेड़ जैसा दिख रहा है कुछ-- नदी किनारे भी कुछ लोग दिख रहे है।

यह तस्वीर फ-- फल मार्केट की बाहर की तस्वीरें आस- पास बहुत सारे से फल के मार्केट लगे बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर तरफ ऊपर में टेंट लगा हुआ है--

यह तस्वीर किसी किले की बाहर की तस्वीर है दिन का समय है आसमान बहुत साफ़ है साइड में बहुत सारे पेड़ और नीचे घास और झाड़िया दिख रहे है।